ये तस्वीर में मुझे एक ऊंचा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

के सामने एक इंसान खड़ा होकर है।

कुछ बाल्टिया के कलर ऑरेंज पिंक और ग्रीन हैं।

जूता के कोने में बहुत सारे टी- शर्ट को हैंगर से लटकाया गया है।

दुकान के बाहर बहुत ज्यादा दिया भी लगाया हुआ है।

और एक लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

सोफे के सामने एक सफेद कलर का टेबल भी दिख रहा है।

टेबल के ऊपर कुछ कैची और कुछ समान भी रखा हुआ है।

बच्चे के पीछे योगा करने वाला मैट भी बिछाया गया है।

ए_टी_एम के अंदर कुछ ऐ_सी भी लगा हुआ है।

पौधे में अलग अलग रंग के फूल निकला हुआ है।

पुलिस स्टेशन के सामने कुछ गाड़ियां भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

रस्ता के सामने दो बस भी दिख रहा है।

ऑटो रिक्शा के अंदर एक इंसान भी बैठा हुआ है।

रिक्शा के सामने एक इंसान खड़ा होकर है और एक इंसान चेयर पर बैठ कर है।

यह पिक्चर में मुझे बहुत सारे काला कलर का चेयर दिख रहा है।

कुछ बच्चे पानी में घुसा हुआ है कुछ बच्चे पानी के बाहर खड़ा होकर है।